वहाँ पे कुछ ऑरेंज जैसा नजर आ रहा है। वहाँ पे एक चार खिड़कियाँ नीचे नजर आ रही हैं।

और बहोत सारे पेड़ नजर आ रहे हैं। बहोत सारे ब्लू --

जहाँ पे लोग शायद बैठते हैं। बहुत सारे पेड़ नजर आ रहे हैं जो पेड़ हैं वो झुके हुए हैं।

यहाँ पे एक चाय का स्टाल हैं जहाँ पर एक आदमी खड़े हैं वहां एक स्कैनर रखा हुआ हैं बोहोत सारे पानी कि बोतले --

यहाँ पे क्रिसमस लिखा हुआ है। यहाँ पे ईसा मसीह --

एक अम अम आदमी भी नजर आ रहा हैं बगल में एक चेयर भी हैं जो नजर आ रही है।